पीछे सेब फल अंगूर संतरे रखे हुए है ओर पीछे टी_शर्ट नजर आ रहा है।

पीछे इसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखा है एक व्यक्ति इसके अंदर बैठा हुआ है नीचे गिला हुआ है।

ये एक मिनी बस है मिनी बस का कलर व्हाइट कलर की मिनी बक्स बस है सामने इसके परफेक्ट लिखा हुआ है इसके दो टायर है।

यह एक गार्डन है जहाँ पर तरह-तरह के झाड़ लगे हुए हैं सामने की तरफ भी झाड़ है पीछे की तरफ भी झाड़ है समने एक घर नजर आ रहा है नीचे की तरफ चेयर लगी हुई है सामने की तरफ एक सीधा रास्ता जा रहा है जिसमें ब्रिक लगे हुए हैं।

एक सनसेट की फोटो है सामने की तरफ इस में तालाब है नीचे बहुत सारे घास लगे हुए हैं सामने की तरफ झाड़ है।

पीछे बैकग्राउंड मे पर एक वॉल है सामने के तरफ मूर्ति आसन लिए हुए बैठी हुई है।

व्यक्ति यहाँ पर देख रहे हैं सामान ऊपर की तरफ पेंटे जमी हुई हैं एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट है सामने के तरफ इसमें एक नाव चल रही है सामने बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

यह एक कंस्ट्रक्शन साइड है इसमें चार मंजिला बिल्डिंग बन रही है सामने नेड बंधी हुई है--

ये बस स्टैंड है यहां पर बसे खड़ी हुई हैऔर वह नीचे पानी भरा हुआ है सामने के तरफ एक टावर लगा हुआ है पीछे के तरफ बहुत सारी झाड़ दिख रहे हैं सामने भी बस है साइड में भी बसें खड़ी हुई है।

ये ब्लैक एंड वाइट में फोटो है आगे के तरफ इस में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है नीचे कच्ची जमीन है मट्टी है।